यहां देखिएगा फ्रेंड काफी सारे रोग दिख रहे है और बस नजर आ रही है यहां पर--

ए_टी_एम मशीन यहां पर रखी हुई है ए_टी_एम जहां पे लिखा हुआ है बोर्ड पे एस_बी_आई ए_टी_एम ।

और यहां पर देखिए नीचे ढेर सारी पब्लिक जमी हुई है लगी हुई है।